ऊपर एक कंबल भी रखा हुआ है दो कुशन कवर रखे हुए हैं एक मेज भी रखी हुई है पास में परदे का डेकोरेशन भी अच्छा लग रहा है।

एक बैनर लगा हुआ है यहां पे बाद में फिसल अड्डा भी है चार कुर्सी और एक मेज रखी हुई है उसके ऊपर किताबें रखी हुई हैं।

और आदमी बुक्स को पढ़ रहा है और यहां पे पंख लगे हुए हैं चेयर रखी हुई है बुक्स लगी हुई है यहां पे बहुत सारी --

यह एक बहुत अच्छा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है इंडियन ऑयल नाम के जाना जाता है यहां पे लोग अभी मोटरसाइकिल दिखाई दे रखी है और एक --

बहुत बड़ा टैंकर दिखाई दे रखा है यहां लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं जिससे उनकी गाड़ी अच्छे से चलती है।

एंड फ्रूट एक बहुत अच्छा से सब्जी की दुकान है जो चोमू के--

मुझे बागवानी में साफ पानी से सब्जियां अच्छी रहती है यहां पे बहुत अच्छे आर्डर दिए जाते हैं यहां पे --

यहां को डेकोरेशन बहोत ही अच्छा लग रहा है।

अच्छा सा भवन बना हुआ है ये जो बहुत ही अच्छा लग--

बहोत अच्छा बहोत सारी मशीनें भी रखी हुई हैं एक कैम्पर भी रखा हुआ हैं स्टूल के ऊपर और एक आदमी शेक भी बना रहा हैं।

किताबों को खरीद रहे हैं यहां नजारा बहोत ही अच्छा लग रहा है।

आधी दिखाई दे रखी है मेज के ऊपर और यहां पे चार पांच चम्मचे भी दिखाई दे रखी है चार पांच प्लेटे भी सफेद कलर की दिखाई दे रखी है एक ये नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है।

चलाई जाती है और यहां पे गाडियों की सफाई भी करी जाती है एवं प्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत सारे काम भी करे जाते हैं।

यह एक बहुत ही अच्छे दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पे बहुत सारे बहुत सी बड़ी दुकान दिखाई दे रखी है जहां पर सेव अनार संतरा सीताफल --

चढ़े बना रहे हैं ये मम्मी पापा बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं और उनके दादा दादी जी भी बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं लोगों के हाथ में बहुत तरीके-तरीके के गेंद लगाए जा रहे लगा हुआ है।

लोग साउथ इंडियन चाईनीज के नाम से वेज रेस्टोरेंट यहां पर दूर दूर से आते हैं और वेज खाना खाकर जाते हैं।

बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं और यहां पे मोटरसाइकिलें खड़ी हुई है।

फूलों की माला लगी हुई है यहां पे लोग आते हैं और दूर दूर से पूजा करते हैं या पे केले के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।